एक ओवर ब्रिज दिख रही है ओवर ब्रिज में ऊपर रोड बना हुआ है नीचे पानी बह रहा है नदी है।

पुल बना हुआ है दूर-दूर तक पेड़ दिख रहै है छोटे-छोटे पौधे दिख रहै है आसमान दिख रहा है और बादल दिख रहै है सफ़ेद--

लाइटें लगी हुई है दूर-दूर तक लाइटें दिख रही है पिलर दिख रहे है लोहे के खंबे लगे हुई है लोहे के --

दो लोग दिख रहै है डी.जे दिख रहा है।

कुछ लोग बैठे हैं स्टेज में कुर्सियां लगी हुई है कुछ आदमी है कुछ पुरुष है कुछ महिलाएं हैं।

तालाव के उस पार छोटे-छोटे घर दिख रहे हैं बाउंड्री बनी हुई है नीला आसमान दिख रहा है पेंट दिख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

एक पार्किंग दिख रही है पार्किंग में कार है चार पांच कार दिख रही है एक रेड कलर की कार है दो-तीन कार सफेद कलर की है।

एक छोटी सी दुकान दिख रही है दुकान झोपड़ी की बनी हुई है ऊपर --

पन्नी लगी हुई है काली-काली पीछे पोस्टर लगा हुआ है एक आर_के कॉफी स्टार लिखा हुआ है चार पांच लोग हैं चाय पी रहे हैं।

एक दो मंज़िला की शॉप दिख रही है शॉप में अमेजिंग मेन्स पॉइंट लिखा हुआ है।

पीलर दिख रहे हैं अगल-बगल कुर्सियां रखी हुई है रोड बनी हुई है रोड के किनारे पेड़ लगे हुए हैं।

नीचे पेड़ दिख रहे है घर दिख रहे है छोटे-छोटे सफ़ेद-सफ़ेद कलर पेंट है पहाड़ की चोटिया दिख रही है।

झंडे लगे हुए है नीचे कुछ लोग है और ईस मसीह की फोटो लगी हुई है मर मूर्ति बनी है पेड़ दिख रहे है।

इसमें नक्काशी है दो-तीन मंदिर और दिख रहे हैं अगल-बगल इस बड़े मंदिर के ।

एक छोटा सा कमरा दिख रहा है और एक दरवाजा दिख रहा है दरवाजे में ताला लगा हुआ है।

और कुछ लोग प्लेटफॉर्म में दिख रहे हैं नीचे फर्स दिख रहा है बैठका है।

बस का काँच दिख रहा है बस भूरी कलर की है फूल लगा हुआ है नई नवेली बस है बस के पीछे पेड़ है।

दुकान का सेटअप अच्छा दिख रहा है लाइटे लगी हुई है समान दिख रहा है कंप्यूटर दिख रहा है ।

आ फल दिख रहे हैं संतरा दिख रहा है और एक आदमी मास्क लगाया हुआ है बनियान पहन रखा है और कुछ आदमी आ जा रहे हैं इधर-उधर से।

एक बड़ा सा पार्क दिख रहा है पार्क के अंदर घास दिख रहा है।

पहाड़ की चोटियाँ दिख रही है जिसमे पेड़ लगे हुए है।

एक मैन रोड दिख रही है मैन रोड एक--

बेड दिख रहा है एक टकटकिया दिख रहा हैं।

एक प्लेट दिख रहा है।

और आसपास गिलास दिख रहे हैं जग है।

पहाड़ का टिला -सा दिख रहा है सीढ़ी बनी हुई हैं।

बड़े-बड़े प चट्टान भी दिख रहे है आस पास--

और आसपास कार दिख रही है बाइकें दिख रही है।

स्तम्भ में मे पेंट है सफेद कलर का लाइटे लगी हुई है स्तंभ में--